यहां पर बहोत सारे लगेज भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे बड़े साइज के और रेड कलर के रखे हुए हैं।

ये किसी पेट्रोल पंप की फोटो दिखाई दे रही है पेट्रोल पंप पे बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक लड़का है जो बाइक में पेट्रोल भरवा कर बाइक स्टार्ट करते हुए भी नजर आ रहा है पीछे की ओर एक मकान बना है।

और बहोत सारे लोग पैसेंजर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामान भी रखे हुए नजर आ --

यहां पर बोहोत सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में एक बकरी है जो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये किसी मंदिर के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे कुछ लोग जिन्होंने वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहने हुए खड़े हैं।